फिक्स किया जाता है और इन स्लीपरों को सीधा जमीन पर रखने के बजाय --

बिट की मदद से मटिरिअल की को वर्क पिस से हटाते हैं।

वाहन है जो मोटर द्वारा सा संचलित होता है मोटरसाइकिल आमतौर पर परिवहन रोजमर्रा के कामो और रेसिंग के लिए उपयोग --

दिखने में बड़ा ही सुंदर पक्षी है जो की जन्मी नवाज करते हैं और साथ ही साथ यह उड़ने में भी --

देवी के रूप में पूजा जाता है गायों को भोजन और आय के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है और इनके प्रति मनवे व्यवहार और अपरिचित त्यागायं --